कुछ मैदान भींजा हुआ है कुछ सुखा हुआ है।

यह एक कंपनी का लोगो है।

इसके टायर निकले हुए हैं व्हीकल का कलर ग्रे है नंबर प्लेट है।

बहोत अच्छा ऊपर आसमान पूरा क्लियर है।

आ इसमें एक हरे कलर का सीट रखा हुआ--

जिसमें एक लड़का बैठा हुआ है।

यह एक कपड़े की दुकान है।

यह एक क्रिश्चयन का घर है।

शीशे से बाहर अच्छा व्यू दिख रहा है और बहोत सारे ऊपर लाइटें लगी है जिसका कलर येलो है।

यहां पे एक इंसान जमीन पर बैठा हुआ है एक रिक्शा चला रहा है।